यहां पर हमे एक बच्चो की टॉय शॉप दिख रही है।

देख सकते हैं और मजदूरों ने जो बांध बनाया है उस पर चढ़ते हुए दिख रहे हैं। शायद वह ऊपर जाने के लिए बनाया है।

खिड़कियों में पर्दे लगे हुए हैं और ऊपर छतों में ए_सी लगे हुए हम देख सकते हैं।

यहां हम देख सकते हैं कि यहां पर पहाड़ और आसमान में रेनबो दिख रहा।

बस स्टैंड है यहां पर दो पब्लिक चेयर रखी हुई है एक पब्लिक चेयर यहां टूटी हुई है।

यहां हम देख सकते हैं कि यह बी डब्लू --

और यह फूलों से सजाई गई दिख रही है।

यहां पर के दो कैमरे मैन हम देख सकते हैं और कई आदमी कैमरे मैन को देखते हुए नजर आ रहे हैं।

इसकी छत बहुत सुंदर लग रही है। वहां पर एक बड़ासा झूमर लगा--

और एक बड़ासा पेड़ हम यहां देख सकते हैं और कच्ची जमीन हमें यहां नज़र आ रही है। पीछे की ओर खेत जैसा दिख रहा है।

यहां पर इंग्लिश टॉयलेट शीट नॉर्मल --

अंदर दो तीन लोग और एक लाल रंग की गाड़ी हम खड़ी हुई देख सकते हैं।

यहां हम देख सकते हैं कि यहां पर डॉक्टर अंबेडकर की प्रतिमा बनी हुई है।

यहां पर एक कंप्यूटर पड़ा हुआ है और कीबोर्ड और माउस भी हम यहां देख सकते हैं।

और एक काले रंग की कुर्सी यहां लगी हुई हम देख सकते हैं।